और बहुत सारी वर्जिस की मशीने रखी हुई हैं।

सामने दीवाल पर कांच लगे हुए हैं कांच पे कुछ पोस्टर बना हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है बाहर एक लाइट लगी है।

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं आदमी के हाथ में एक बैनर है।

यह एक बहुत बड़ा मंदिर है।

नीचे बॉल पड़ी हुई है ऊपर एक ए_सी र ए_सी रखी हुई है।